ये जिसका रंग पीला है बहुत सारी झाड़ियां है।

गेट भी हैं जो हैं बंद हैं गेट का रंग जो हैं नीला है।

इस चित्र में जो है एक बडा सा हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी पहाड़े हैं।

अंदर एक परिंदा बैठा हुआ है जिसका रंग काला है अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं।

इस चित्र में जो है एक मार्केट की तस्वीर है जो मछली मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ है।

इस चित्र में जो है एक सर्कल की तस्वीर है जहां पे एक क्लॉक खड़ा हुआ है बड़ा और एक आदमी घोड़े पे बैठी हुई स्टैचू है।